एक बोर्ड लगा है। बोर्ड पर इस्टार न्यू इ रिक्शा --

आ लड़के ने सर पर व्हाइट कलर का हेलमेट पहना हुआ है। ग्रीन जॅकेट पहना है।

आ लाइट जल रहा हैं एक बोर्ड लगा हैं।

आ दो इस्टूल रखे हुए नज़र आ रहे हैं।

इमेज में इस्टेज सजा हुआ नज़र आ रहा हैं।

एक एम्पायर खड़ी हुए दिखाई दे रहे हैं।

कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं।

आ पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

बिल्डिंग पर कही ऑरेंज --

इमेज में ब्लू कलर के कॅबिन्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इमेज मे जिम दिखाई दे रही है।